में पेंटिंग लैम फोटो फ्रेम आधिक समान दिख रहा।

यहां हरे पेड़ पौधे हैं कुछ सूख भी रहे हैं।

असमान भी दिख रहा है।

स्टूल भी रखे हुए हैं।

हवा के लिए जंगले खुले हुए हैं।

यहां पर ये बहुत से लाल रंग का पेंट हो रहा है।

इस चित्र में हमें यह लड़का दिखाई दे रहा है।

टॉवर भी लगा हुआ हैं।

इस चित्र में हमें यह मंदिर दिखाई दे रहे--

एल्लो कलर का पेंट हो रहा--

इस क्षेत्र में हमें यह दुकान दिखाई दे रही--

जिसमें वूफर भी बिक रहे--

दीपावली भैया दूज का पोस्टर लगा है।

गेट और विंडो ग्रिल लगी हुई है।

कंपनी का नाम अरुणा कंपनी है।

इस चित्र में हमें मकान बनते हुए दिख रहे हैं।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

इस चित्र में हमें यह रोड दिखाई दे रहा--

चित्र में हमें यह काले रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इसमें ठंडे भी रखे हुए हैं।

एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई--

इसमें सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें मिडवे फिटनेस जिम दिखाई दे रही है जिस--

जिसमे डाबर आमले की शीशी तेल की शीशी हिमालय का फेस वाश फेयर लवली का फेस वाश नोस्कार्स का फेस वाश चाय की कॉफी और यहां पर बहुत सारी ची --

लोहे के गेट भी दिखाई दे रहे हैं और यह कचरा भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे--

हरे पेड़ पौधे भी बहुत सारे है।

दो लड़कियां नहा रही हुई है।

यहां नि भर रही है।

नहाने की पकड़ कर नहाने की वो है।

एक बतख भी दिखाई दे रही--

बाहर एस_बी_आई बैंक भी दिखाई दे रहा है।

गत्ते की पेटियां भी रखी हुई हैं।

इस चित्र में हमे इंडियन ट्रेडर्स हमारे यहां से विविधकार की फैंसी डिस्पोजल क्रोकरी उपलब्ध है। बोर्ड पर लिखा हुआ है।

यह बिल्डिंग क्रीम कलर का पेंट हो रहा है।

इस क्षेत्र में हमें हाजीपुर जंक्शन दिखाई दे रहा है।

जिसमें पीले रंग की लाइट जल रही--

लाइटे जल रही हैं यहां पिंक कलर का पेंट हो रहा है।

फूलें भी दिखाई दे रही हैं।